दिख रहा है। यहाँ पर ये एक रूल है। काफी सारी गाड़ियाँ खड़ी हुई हैं।

लगी गई है और यहाँ पर गेट भी है| यहाँ पर और काफी सारी लड़की बैठी है और कलर का --